इस तस्वीर में य-यहाँ पे एक बिल्डिंग नज़र आ रही बिल्डिंग के सामने एक पार्क बना हुआ है पार्क में बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है और लगी हुई है ।

और यहाँ पे हमें अ य ये एक सड़क नजर आ रही है छोटी-सी जिसमे हमें मिट्टी दिख रही है मिट्टी के अलावा यहाँ पे ----

इस तस्वीर में हमे एक स्कूल दिखाई दे रहा है इसका कलर व्हाइट है और यहां पे बगल में एक बिल्डिंग है जिसमें पिंक कलर नजर आ रहा है।